यह एक कार वाशिंग सेंटर दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक व्हाइट कार धोई जा रही है जहाँ एक ब्लू कलर शर्ट पहना हुआ आदमी उस कार को धो रहा है।

वो बोनेट खोल के उसपे कर--